इस तस्वीर मै हमे यह पर बकेट्स नजर या रहे है बकेट्स मई तीन चार फ्रूट्स है जैसे यह पे ऑरेंज और हम्म ये अ ये--

और यहा पर बैठने के लिए एक चेअर लगा हुआ है। पीछे हमे एक बौंड़री नजर आ रही है। बौंड़री के पीछे घर बने हुए है।

इस तस्वीर मे हमे पोस्टर दिखाई दे रहा है ये रेड और व्हाइट कलर का पोस्टर है और यहाँ पे हमे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है। यहाँ पे एक दीवार लगी हुई है।

का कलर व्हाइट है रेड है और इसमे गेट लगा हुआ है। गेट का कलर भी रेड और व्हाइट है। यहाँ पे नेट लगी हुई है जो ग्रीन कलर की है।

इस अजेबेयर मे यहा पर चेअर लगी हुई है। जिस मे एक लड़की बैठी हुई है और पीछे लड़की वगरे बैठे हुए है। बहुत सारी जनता यहा पर एक लड़की जिस ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए है।

हॉस्टल में ब्लू रेड अह ऐसे कलर दिखाई दे रहे है यहा पे नीचे बहुत सारी बाइक दिखाई दे रही है| बाइक के अलावा यहा पे हमे कार दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे एक दुकान नजर आ रही है ये दुकान यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है।

ग्रीन कलर की ऐसे बहुत सारे फ्रूइट्स रखे हूए है और यहा पे उपल लाइट लगी हुई है।

तस्वीर मे हमे एक बिल्डिंग नजर आ रही है। बिल्डिंग के आगे एक पेड़ लगा हुआ है। पेड़ के आगे और भी घर बने हुए है यहा पर हमे एक ऑटो दिखाई दे रहा है। ऑटो का कलर ऑरेंज है।

कुटी मे रेड व्हाइट और येल्लो कलर भी दिख रहे है और कुछ बाईकस् आ रही है। यहा पर और घर बने हुए है।

इस तस्वीर मे हमे बहुत सारी चेयर्स दिखाई दे रही है चेयर्स मे ये की रेड कलर और ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है इसके अलावा पे स्क्रीन लगी हुई है इसमे पर्दा लगा हुआ है ये पर्दा येलो कलर का लगा हुआ है।

और यहा पे एक लड़का है जिसके शूज दिखाई दे रहे है और यहा पे लाइटस लगी हुई है।